यह मुझे कॉस्मेटिक --

यह मुझे एक सिनेरी दिख --

ऐसा लग रहा है जैसे कि वह वेफर के पैक --

जैसा लग रहा है नदी है। बहोत इंसान खड़े हुए हैं।

ड्राइंग दिखाई दे रहा है । रेलिंग दिखाई दे रही है ।

पेड़ पौधे दिख रहे हैं । घास दिख --

बोर्ड पे कुछ हिंदी अक्षरों में लिखा ऐसा प्रतीत हो रहा है ।